इस फोटो में हमें यहां पर एक जंगल का चित्र दिखाई दे रहा है।

यहां हमें दो आदमी दिख रहे है।